पर्दा भी लगा हुआ है यह पानी पीने के लिए टेबल में जार रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं यह बिल्डिंग का कलर क्रीम और मेरून में है।

यह एक बैंकेट हॉल का दृश्य है जहां पर पार्टी के लिए बुफे सिस्टम लगाया हुआ है।

ऊपर बैलून भी लगा हुआ है जो कि रेड येलो और वाइट कलर की है और यहां पर टेंट भी लगा हुआ है।

और सभी कोई चेयर मे बैठे हुए हैं एक टेंट भी गड़ा हुआ है जिसमें बहोत सारे लोग खड़े हैं।

और वह एक दाएं ओर देख रही है एक बाएं ओर देख रही है।

कुछ लोग झोला लेकर आगे की ओर जा रहे हैं और बाइक भी लगा हुआ है।

यह एक पार्किंग यॉट है जहां पर बहुत सारे कार लगी हुई है एक वैन भी लगा हुआ हैं।

और पानी जमा हुआ है यह बिल्डिंग का कलर हल्का ग्रीन में है।

बहोत सारे रेलिंग लगे हुए हैं जो की स्टील की है।

टेंट हाउस से बनाया गया है जो कि ग्रीन कलर का चादर है।

यह सुपर मार्केट का दृश्य है।

क्योंकि कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ है।

और यहां बहोत सारे बॉस भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रोड का दृश्य है।

बगल में एक बड़ा सा बिल्डिंग भी है जो क्रीम कलर और स्काई ब्लू कलर की है।

यह गैनी आइसक्रीम है जो की सने नाइंटीन फिफ्टी सिक्स लिखा हुआ है।

यहाँ पर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जिसमे बहोत सारी दूध पनीर बटर की पोस्टर लगी हुई हैं।

और एक मैट भी बिछाया हुआ है जो की रेड कलर की है।

यह एक डांस क्लास का दृश्य है जहां पर एक महिलाएं एक बच्चा को डांस सिखा रही है।

सभी लोग दिया जला रही है और राम जी और सीता जी का ड्राइंग किया हुआ है।

एक टोकरी में बहोत सारा दीपक लाया गया है।

यह एक कैफे है जहां से सनराइज दिखाई दे रहा है।

जो कि ऑरेंज और येलो कलर की है।

टेबल के ऊपर मेन्यू रखा हुआ है टिशू पेपर रखा हुआ है।